रही है यहां का एरिया काफी सुन सान लग--

इस इमेज में मुझे एक खेल का मैदान--

लड़कियां क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस कर रही--

रहा है और यहां झांकी में--

इमेज में मुझे गोल मशीन जैसी दिखाई दे--

की ऊपर बोर्ड में लगा--

एक बहोत सुंदर झरना बहते--

इस इमेज में मुझे एक फ्रुट का--

दहा है। पेट्रोल पंप पर लोग भी--

है। यह लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई

मुझे एक बहोत सुंदर सा रूम दिख रहा--

रहे थे और यहां चेयर --

इस इमेज में मुझे एक कारखाना दिख रहा--